पोधे लगे हुएपोधे के सामने बहुत सारी हरी भरी घास दिख रही है बिल्डिंग मे सफ़द कलर हो रहा है बिल्डिंग के साइड में पेड़ लगे हुए हैं।

बहुत अच्छा बगीचा दिख रहा है उसमे बहुत सरे हरे-भरे और एक उसी मे एक--